पुट्टी का काम सजा रहे हैं मकान को। टेलें लगा रहे हैं। गेट दरवाजा लगा रहे हैं।

यह इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिज़ाइन की गयी है।

यहाँं एक पसरट की दुकान है।